और एक महिला और एक व्यक्ति जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं।

इस तस्वीर में हमें पहाड़ो का बहोत ही सुन्दर नजारा देखने को मिल रहा है।

इस दुकान के बाहर रोड पे हमें एक कार भी खड़ी दिखाई दे रही है।

इस दुकान के अंदर एक टोकरी पे लाल रंग का कपड़ा रखा हुआ है।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

जिसके ऊपर हमें एक कैलकुलेटर रखा नखा नजर आ रहा है।

जहाँ हमें दो बसें खड़ी हुई दिखाई दे रहीं हैं।

इस सुपर स्टोर में एक एल.ई.डी. स्क्रीन एक ए.सी. भी लगा हुआ है।

जो की एक व्हाइट कलर की शर्ट है।

सड़क जाती हुई नजर आ रही है।

इस की चारो तरफ एक गोल्डन कलर लाइट लगाई गयी है।

और उसको सफेद रंग से भी बनाया गया है।